पेड़ है जंगल है उसके साइड में।

यह छत पे चारो साइड --

स्कूल के साथ में बहुत सारा गाड़ी खड़ा है।

इससे पानी आ रहा है।

टेबल में रखा है सारा कुछ।